इस इमेज में यहां पर एक रंगोली दिखाई दे रही है जो बहोत ही खूबसूरत लग रही है।

और पूरे कांच के शीशे वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

जहां पर सामने काउंटर पर कुछ लड़के लड़कियां खड़े हुए है।

जहां पर फूलों की माला नजर आ रही है।

और यहां पर देखिएगा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा नज़र आ रहा है।

और ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट शूस ।